रेड बोर्ड बहोत ही अच्छे से दिख रहे हैं यहां पर--

एक यंग बॉय है जो कार की सफाई कर रहे है के कार को अच्छे से घीस रहे--